नीले कलर का टीना लगा हुआ है।

लाल कलर के पर्दे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

जहां एक गार्ड खड़ा हुआ है नीचे रेड कलर के मैट बिछे हुए हैं अंदर बहोत सारे टेबल कुर्सियां हैं।

आसमान का कलर नीला दिखाई पड़ रहा है।

अंदर बहुत सारी लायटे जल रही है ए_सी भी लगी हुई है।

पीछे दीवाल का कलर पीला है।

पिंक कलर और येलो कलर की साड़ी वाली दो लड़की डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

यह डांस क्लास दिखाई दे सामने एक बड़ा सा मिरर नजर आ रहा है वाइट कलर का पीला जिसमें डांस इंजॉय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दो बॉक्स लगे हुए हैं।

मैंट दिखाई दे रहा है पानी का बोतल नजर आ रहा है बैग नजर आ रहा है।

व्हाइट एंड लाल रस्सी से बंधी हुई है एक छोटा सा दीवाल बना है सीमेंट का जिसमें चारा रखा हुआ है।

बोर्ड बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बहोत सारे कुछ समान दिखाई दे रहे--

लाल कलर का काउंटर एक लड़का नजर आ रहा है साइड में एक लाल कलर का बोर्ड लिखा हुआ जिसमें वन वन नाइन नाइन लिखा हुआ टैडी बीयर दिखाई दे रहे हैं।

सामने लाल कलर का बोर्ड है जिसमें मक्का फिश पॉइंट एंड चिकन सेंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ओरेंज कलर का दिवाल है एक आदमी स्टूल में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी मछली नजर आ रही है कुछ टाइप की एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यह सब्जी मंडी नज़र आ रही है एक औरत जमीन में बैठ कर सब्जी बेचती हुई दिखाई दे रही है एक औरत आ रही है मास्क लगा कर --

व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है जमीन में एक चेयर नजर आ रहा है ब्लैक कलर का--

गेट नजर आ रहा है व्हाइट कलर का दिवाल है।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

मैट बिछा कर बहुत सारे लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं बड़ा सा--

यहां हॉस्पिटल रूम नजर आरा जिसका कलर व्हाइट है इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट कलर का बेड है जिसमें--